इस इमेज में मुझे कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जोकि बस में लाइन से खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और मुझे मैदान लग रहा है बोहोत बड़ा और यहाँ पर एक आदमी ओ खड़ा है ।

पेड़ पौधे मुझे दिखाई दे रहे हैं मुझे यहां पर और एक पाइप है लोहे का वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है गड़ा हुआ अपने गा गाड़ी पे जाता हुआ एक आदमी मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर ।

सफ़ेद मुझे बादल दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान में पानी के अंदर परछाई सी मुझे दिखाई दे रही है हरे-हरे घास मुझे दिखाई दे रहे हैं और पानी नीला दिखाई दे रहा है मुझे और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे आसमान दिखाई दे रहा है मुझे कुछ दो कलर दिखाई दे रहे हैं जो कि पर्पल और नीला कलर वो मुझे दिखाई दे रहा दूर एक मंदिर है मंदिर सा मुझे दिखाई दे रहा।

इस इमेज में मुझे कुछ तलवारें दिखाई दे रही है जो की दीवार से चिपकी हुई है और उसके आलावा तलवारो के बीचो-बीच मुझे कुछ एक पोस्टर सा दिखाई दे रहा है छोटा-सा और दीवार है दीवार मुझे पीले कलर की दिखाई दे रही है।

उसके आजू बाजु मुझे कुछ परछाई दिखाई दे रही है हल्की सी खिड़की जैसी |